यहां पर सामने दो दुकान है दुकान के ऊपर लिखा हुआ है भारत मेल्स आगे एक आदमी खड़ा है अंदर जाने के लिए लगी सीढ़ियां लगी हुई है बाहर एक मोटर साईकिल खड़ी है।

नीचे जो पत्थर पड़े है उनके पास छोटे छोटे कचरा पड़ा है एक आदमी खड़ा है जिनके सफेद कलर के टी शर्ट पहनी हुई है लोवर पहनी हुई है।

छोटे छोटे पौधे हैं और इधर के साइड एक घर बना हुआ है घर के बाहर खिड़कियां लगी हुई हैं ऊपर गहरे बादल छाए हुए दिखाई दे रहे है।

और ऊपर कुछ तार लगे हुए हैं लाइटें हैं जो जल रही है इधर एक चार्ट बना हुआ है चार्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ये कपड़ों का दुकान है।

और पिछे बहोत बड़ा मंदिर बना हुआ है कुछ घर बने हुए हैं घरों के आगे बहोत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

परे एक रेल की पटरी है पटरी के पास में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े हैं इसी के पास से सड़क निकल रही है।

इसके नीचे से पीछे से सड़क निकल रही है सड़क के इधर दोनों साइड में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए --

इधर भी बहुत ज्यादा मात्रा में कमरे बने हुए है जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और सामने एक बहुत ज्यादा मात्रा में पोल बनी हुई है।

नीचे कुछ पार्क बना हुआ है ऊपर लिखा हुआ है पुलीस --

एक येलो कलर के कपड़े पहने हुए है पीछे कुछ बना हुआ है उसके ऊपर फूलों की मालाएं लगी हुई है घंटी लगी हुई है।